जिसके ऊपर बहोत सारी टॉयलेट सीट और अन्य प्रकार की सामग्रियां रखी हुई है।

मछलियां लगता है मर गई हैं।

यह फोटो कोई रास्ते का दिख रहा है।

इस फोटो में एक आंटी को देखा जा सकता है।

पकल में बैठने के लिए ब्रेंच भी है।

काफी सारे बैग और ट्रॉली बैग कोदेखा जा सकता है।

इस फोटो में डैल और एच_पी वर्ल्ड की--

के शोरूम को देखा जा सकता है जिसके बगल में बहुत सारे बाईकें और साइकिल लगी हुई है।

यह फोटो एक फैमिली रेस्टोरेंट का दिख रहा है।

यह फोटो कोई मेडिकल शॉप का दिख रहा है जिसमें काफी सारी दवाईयां--

की ऊपर एक चार्जिंग बोर्ड भी बना हुआ हैं।

दीवाल पर सर्टिफिकेट भी लगे हुए हैं।